दूर दूर तक सिर्फ खेत ही नजर आ रहा है।

बीच में एक खिड़की नजर आ रहा है।

कपड़ों का रंग सफेद और लाल है।

मे आई हेल्प यू लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक कपड़े का दुकान दिख रहा है।

मंदिर में दो गुंबज नजर आ रहे हैं।

कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हुए दिख रहे हैं आस पास बहुत ज्यादा भीड़ भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में एक ब्रिज नजर आ रहा है।

दूर दूर तक खेत नजर आ रहे हैं।

बीच की तरफ एक रिक्शा आता हुआ दिख रहा है।

फैक्ट्री में एक शेड डाला हुआ है।